बिल्डिंग के अंदर जाने के लिए रस्ता दिखाई दे रहा है बिल्डिंग के अंदर जाने के लिए सीढियाँ भी दिखाई दे रही है।

मुझे यहाँ एक ऑटोरिक्शा दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ सड़क दिखाई दे रही है मुझे यहाँ मोटरसाइकिल दिखाई दे रही है।

बस के साम- बस के सामने से दो बस के चका दिखाई दे रहे है बस के बगल में हरे-भरे पेड़ दिखाई दे रहे है।

मुझे काले रंग के गुब्बारे दिखाई दे रहे है मुझे ये एक टेबल दिखाई दे रही है जिस पर शीले रखी हुई है।

मुझे यहाँ पर बहुत सारे बच्चे दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगे दिखाई दे रही हैं मुझे यहाँ पर हरे भरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।